इसमें एक सामने में बिल्कुल बिल्डिंग दिखाई दे रही हैं बिल्डिंग के साथ झूला लगा हुआ हैं जिसमें बहोत बच्चे खेल रहे हैं।

इसमें भी एक मकान दिखाई दे रहा है मकान के ऊपर एक टंकी भी लगी हुई है मकान के पीछे सड़क है।

प्लास्टिक के पैकेट भी सिया के है और इसमें एक दरवाजे के अन्दर एक व्यक्ति भी दिखाई दे रहा है और इसके साथ में एक होटल बना हुआ है।

यह एक कपड़े का शोरूम बना हुआ है इसमें बहुत सारे रंग बिरंगे कपड़े लटकाए गए हैं और कुछ तस्वीरें जैसी भी लगाई गई हैं।

इसमें आसमान भी दिखाई दे रहा है जो की बहोत ही साफ--

एक कमरा है कमरे के अंदर दीवान बेड लगाए हुए हैं उसके ऊपर चादर बिछीई हुई है और उसके ऊपर--

टेबल भी दिखाई दे रहा है सामने खिड़कीयां दिखाई दे रही हैं।

कुछ कुर्सीया भी रखी हुई हैं।

खड़े हैं और सामने एक पहाड़ दिखाई दे रहा है जिसमें बहोत बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं और ऊपर आसमान दिखाई दे रहा है।

पत्थर की दीवार दिखाई दे रही हैं जिसके ऊपर--

पत्थर के साथ बंद किया है और साथ में उसके दोनों--

आसमान दिखाई दे रहा है पीछे जंगल भी दिखाई दे रहा है।

इसमें और कुछ लोग इसे सामान खरीद रहे हैं पीछे कुछ मकान बने हुए हैं।